सामने एक शॉप दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारी टीन भी दिखाई दे रही है यहां पर शॉप का नाम मिथिला बुक सेंटर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक वॉशिंग मशीन भी रखी हुई दिखाई--